ये एक मछली मंडी का फोटो है जहा पर एक आदमी मछली बेचता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर छोटी-बड़ी सभी तरह की मछलियां द- द- दिखाई दे रही है ।